दो टावर बने हुए --

एक किराने की शॉप है।

जंगल में बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई है ।

नीचे में उस के सुरुंग लगे हुए ये सुरुंग --

मंदिर के पीछे मंदिर में बहुत सारे लोग हैं।

मकान मे गोडाउन बना हुआ है।

एक बहोत बड़ा सा मंदिर है।

आँगन मे बहुत सारी रेती पड़ी हुई है।

उसके ऊपर एक आ घाघर है।

आं व्हाइट और रेड कलर की ऊनी --

ज्ञान मॉडर्न स्कूल --

फेशिअल क्रीम्स लगी हुई ह --

जो पंडाल बना हुआ है वहाँ --

एक बोत बड़ा-सा पेड़ है। पेड़ पे --

अ बाहर में एक --